कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ मशीने खड़ी हुई है यहाँ पर हमे ऊपर बिल्डिंग दिखाई दे रही है|

सामने हमे एक अ गेट दिखाई दे रहा है इसके आगे हमे अंदर हमे कुछ कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही है जिसमे कुछ लोग बैठे हुए है|